पानी का झरना है और पानी का रंग हरा रंग हो रहा है पानी मे बहोत ज्यादा काई जमी हुई है।

बिल्डिंग का अह ब्लैक कलर का एक गेट लगा हुआ है।

सभी सब्जी मंडी की दुकानों पे अलग अलग नाम लिखे हुए हैं और बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं।

सामने एक बड़ी बिल्डिंग है बिल्डिंग के सामने तीन चार कार खड़ी है।

सड़क के सामने कुछ बिल्डिंगे बनी हुई है बिल्डिंग का कलर व्हाइट है और बालकनी रेड कलर की है।

मिट्टी के टिले हैं और उनपे कुछ दोब उगी हुई है और साइडों में पहाड़ बी है।

यह एक गार्डन की फोटो है इसमें एक व्यक्ति खड़ा है।

और मंदिर के बाहर लाल कलर का पोस्टर है उसपे सफेद रंग की श्री गणेश मंदिर लिखा हुआ है।

यह एक सूर्य भगवान का मंदिर है और यह लोहे से बना हुआ है और इसकी --

लोहे का शटर लगा हुआ है जिसका कलर व्हाइट कलर का है जिम का नाम फिट ओ क्लॉक है।

मंदिर का मुख्य द्वार पर गोल्डन कलर का पेंट हो रहा है और मंदिर की दीवारों पर सफेद रंग का --